और लाइट पोस्ट भी नजर आ रहा --

ये एक फोटो में मुझे एक बिल्डिंग नजर आ रहा है।

इसमें दिखाई दे रहा है मुझे कि इसमें बैटरी भी है।

और एक गेट दिखाई दिया है लोहा का।

एक लड़की तो अं अं रेड कलर का कपड़ा पहना है एक स्ट्राइप एक ब्लैक कलर का एक ब्लू कलर अ ब्ल्यू कलर का कपड़ा पहना है।

और साइड में यहां में रस्ता में कुछ पड़ा हुआ है और ये रास्ता भी कुछ नजर आ रहा--

ये फोटो को देख के अ ये कुछ नदी के किनार में है।

इसमे एक फ्रीज रखा है और इसमें रखा है मेकड्वेल और आई_बी बी_पी ब्लू बी_पी ब्लैक और हंड्रेड पैपर्स --

ये सी_बी_आई बैंक है अ जिसमें अ पब्लिक इधर से उधर वॉक कर रहा है मुझे यहां में तीन आदमी नजर आ रहा है।

ये एक घर का बैक साइड तरफ जैसा नजर आ रहा है जिसमें अ बे अ फूल अ भी रखा हुआ है।